गमले रखे हुए पत्थर के--

सारे दिख रहे हैं खंभे भी दिख रहे हैं।

और इसके बगल में दीवाल दिखाई दे रही है घर दिखाई दे रहा।

उनकी शक्ल देख रही है और बाकी की नहीं है।

यह कॉस्मेटिक की दुकान है जहां पर बहुत सारे लोग दिख रहे है महिला भी दिख रही है।